सामने एक किराने की दुकान है जिसपे शेम्पू कुर-कुरे टंगे हुए है।

सामने रोड दिखाई दे रहा है और यह बिल्डिंग सफ़ेद और लकड़ी कलर की दिखाई दे रही है इसमे खिड़की लगी हुई है जिनका कलर हरे रंग का दिखाई दे रह--

सामने बूके भी रखी हुई दिखाई दे रही है और डॉल्स न्यू न्यू ड्रेसे पहने हुई खड़ी हुई है।

रोड भी नजर आ रहा है सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है रोड पे कचरा भी डाला हुआ है।

रोड दिखाई दे रहा है जिसपे लाइन बार बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है और खंबे टाइप के लगे हुए है उन में बल्ब--

उस फुब्बारे मे बहुत सारी लकडी टाइप की डिज़ाइन लगी है उनके मू पे एक गोल गोल फल टाइप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उप--

बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए नजर आ रहे है काले अंगूर हरे अंगूर बहुत यम्मी नजर आ रहे है।

सामने एक कैफ़े दिखाई दे रहा है।

और ऊपर बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है और खुले मैदान मे सारी कुर्सिया ही कुर्सिया सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही--